दो तीन लोग बनवाने के लिए हैं एक मस्त्री हैं बना रहा हैं बगल मे एक कुर्ती हैं कुर्ती के बगल मे एक इंसान खड़ा हैं।

सूरज एवं ढलने वाला है यहाँ बगल-बगल में दिखाई दे रहै है इंसान घर भी है यहाँ --

यहाँ से जंगल भी बहुत ज्यादा बहुत ही घना जंगल है मछली भी पकड़ते हैं यहाँ पिकनींक भी मनाने के लिए बहुत दूर-दूर से आते है यहाँ--

ये लग नहीं रहा है कि ये ऎयरपोर्ट है दरवाजा भी बंद है जाएंगे ऎयरपोर्ट तो लग रहा हैं ।

अउ निचे भी फर्श में भी लाल-लाल कलर दिखाई दे रहा है।

घर हे लाल कलर का--